इस में हॉस्पिटल है | हॉस्पिटल बहुत बड़ा है कई तालाब बनाये गये हैं | देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है | पोल है |

ये पूर्णिया हॉस्पिटल है इस में पंखा लगा हुआ है बल्ब जल रहा है घड़ी है। .